और पेड़ ओड़ तो बहुत सारा दिखाई दे रहा है इधर-उधर उधर भी दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा पेड़--

और वो जो बना हुआ है उसमें पेड़- पौधा छोटा -छोटा पौधा उगे है |

मांदर वांदर से सब हाथ वाथ पकड़ के डांस वांस कर रहै है।

और ए सीढ़ी पे लगा हुआ है दोनों साइड --